रोड है रोड के साइड में एक पेड़ है | जहाज भी जा रहा है | पूरा आदमी भी लग रहा जना रहा है | इधर से एक लईका जा रहा है | गार्डन बना हुआ है।

लग रहा है शादी वाला रूम है इ रूम के सजाया जा रहा एक डिब्बा भी रखा है साइड साइड से फूल भी है आर एक अम्म-जेंट्स एक लेडिज है साइड में एक इ साइड में दो गेट जेंट्स साइड में लेडिज है।

लग रहा है इधर पहाड़ी एरिया है पहाड़ एक जेसे एक लड़का उधर जा रहा है घासे बोहुत है पेड़ बोहुत लगा हुआ है।

इ ये पहाड़ के झाड़ी से पानी गिर रहा बड़ा-बड़ा पहाड़ छोटा-छोटा पहाड़ है पेड़-पौधे भी छोटा-छोटा है पता ने कहां से पानी आ रहा है नीचे में गिर रहा है पानी।

ये देखीय ये गेट है गेट पे लग रहा पोछारा विचारा सब लगा हुआ है।

बड़ा-बड़ा छोटा-छोटा पेड़ भी है।